इसमे एक ब्लैक कलर का दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है।

जर्सी गाय पिला रस्सी से बांधा हुआ है।

गाय के सामने टोकरी में भूसा रखा हुआ है।

सामने इसमें एक ठो पुल है।

हमने एक बांस का डंटा हाथी के ऊपर जो आदमी उसके हाथ में है।

यह चित्र एक बगीचा का है इसका छत ग्रीन कलर के प्लास्टिक से बना हुआ है।

इसमें दो पिलर दिखाई दे रहे है एक चेयर एक टेबल दिखाई दे रहे है।

दोनों ओर रेलिंग भी है।

एक मंदिर में तीन महिला पूजा की रहे हैं।

इस चित्र में एक बस खड़ी दिखाई दे रहा है जो व नीला और वाइट कलर का है।

इसमें चार डिब्बा में बिस्कुट दिखाई दे रहा है।

सरकारी स्कूल के प्ले ग्राउंड है जिसमें एक बस लगा हुआ है।

ये सामने एक पोल भी है।

इसमें एक टेबल है।

शीशा का गेट है सामने।

नीचे फलैश मिट्टी कलर का है इसमें टेबुल भी रखा हुआ है।

कुछ तार भी इसमें दिखाई दे रहे है।

बगल में छोटा सा भी गेट है एक बाउंड्री है जिसमें दो चित्र बनाए गए हैं।

इसमें एक पौधा भी दिखाई दे रहा है।

और इसमें कुछ बैलून भी है व्हाइट और ब्लू कलर के।

यह एक रूम है जिसमें टी_वी दिखाई दे रही है।

इस हाल में एक सोफा सेट भी है।